यहाँ पर एक बड़ा सा पूल बना हुआ है जिसमे से पानी बहता हुआ दिख रहा है।

--और पूल में बहुत रेलिंग लगा है जो ब्लू कलर का दिख रहा है दिवाले कुछ पुराने लग रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसके साइड पे बहोत सरे जे_सी_बी खड़े है जो येल्लो कलर के है उसमे---

यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है उसपे नदीम ऑटो गैरेज एंड फिरोजी इलेक्ट्रिसियन लिखा है सामने एक वाइट कार रखा है।

यहाँ पर बड़ा सा दीवाल उठा हुआ है जिसमे से बिच में दो गड्ढे जैसे बने है उसमे से पानी गिरता दिख रहा है।